वहाँ पर एक साइड में सीधी भी लगाई हुई है।

यहाँ पर अलग अलग स खूब सारे प्रकार के--

कुछ पंछी छोटे तो कुछ पंछी बड़े दिखाई दे रहे हैं ।

इस चित्र में बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ सूखी घास पर दिखाई दे रही है।

मशीनों में बहुत सारे वायेर्स है ऊपर--